क्यूंकी इसका कलर व्हाइट है येलो है तो तीनों का व्हाइट कलर येलो है नीचे पार्क है सबके आगे और रोड है यह किसी कॉलोनी वगैरा का फ़ोटो लग रहा --

--या किसी पार्क का फोटो लग रहा है जो ग्राउंड खली ग्राउंड होते हैं गौ सैम मैं और एक टावर है जो मॉल्स मैं काम करने वाले सिम का काम होता है वह गाँव बस्ती में लगा रहता है चारों साइड्स से यह ग्राउंड घेरा होवा लग रहा और इस क्रिकेट वगेरा भी खेलते हैं बची लोग जो काफी खूबसरत है।

और एक पंजाबी बैठा हुआ है और एक कस्टमर जैसी लग रहे हैं और अंदर में बहुत खूबसूरत हैं।

नीचे हरा कलर का लाल कलर का रेड कारपेट भी हैं दोनों कलर का और एक आदमी हैं जो फोटो खींच रहे हैं और कुछ डोंगल वॉन्गल भी रखा हुआ हैं और ये शायद जिम के ही हैं और जिम करना चाहिए हर व्यक्ति को।

--और इसके अंदर में कपड़ा वपड़ा मिलता है तरह-तरह की कंप्यूटर का काम वगैरा भी होता है ।

--तरह- तरह की चीजें होटल वगैरा भी है इसमें। और यू_पी_आय सब टंगा हुआ है बगल में और शीशा से पूरा--

एक बड़ा सा मंदिर है जिसके अंदर ढेर सारी मूर्ति है की डिज़ाइन बना हुआ है दिवाल में और ये सब मार्बल से बनाया गया है और बीच में एक काला ऐसा मूर्ति है।